नॉर्मल सा बैठने के लिए चेयर दिया हुआ है पीछे।

और एक ब्लू कलर के शर्ट में कोई--

ये मेरे ख्याल से कैफे है बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं क्या मस्त इंटीरियर है एक पंखा है बहोत सारे अलग-अलग डिजाइन की लाइटे लग --